यह टावर है। टावर बहुत अच्छा है लोहे का बनाया गया है।

नीचे एक बस आ रहा है बस नहीं हो सकता है बस के दिशा में दिखाई दे रहा हैं दिखने में अच्छा है ।

ट्रे मे रखा हुआ है ट्रे का रंग उजला है उसके नीचे एक कढ़ाई है कढ़ाई का रंग काला है और दिखने मे अच्छा लग रहा है सुंदर दिखाई दे रहा है --

नीला है हरा है काला है देखने में अच्छा लग --

इसमें खाली जेंट्स का कपड़ा --